ये एक कपड़ों की दुकान है जिसमें एक पिंक कलर की फ्रॉक लटकती हुई दिखाई पड़ रही--

एक आदमी टेबल पे झुका हुआ खड़ा है जिसने टोपी लगा रखी है येलो कलर की।